यहाँ तारो की उलझने बनी हुई हैं खम्भों पे |

एक बहु मंज़िला ईमारत है जिसमें एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है| ये बिहार में स्तिथ है।

दृश्य दर्पण सलून का है इसमें बालों को काटा जाता हई हमो ट्राई कर सकते हैं की हम--

इसमें महाकाली की भी मूर्ति लगी हुई है और --